और मंदिर के पास कुछ लोग खड़े हुए हे निचे एक चटाई बिछरी हुई हे वहा पर कुछ महिलायें बैठी हुए हे |

निचे रंगबेरंगी पट्टिया बिछाई हुई हे पीछे एक काचका शो केस लगा हुआ |

एक कैरट में काफी टमाटर रखे हुए हे लाल कलर के भी हे --

एक चबुतर बना हुआ हे | उसमे एक मूर्ति भी बनी हुई हे |